नमस्कार दोस्तों additional features of ipython पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल के अंत में आप निम्न करने में सक्षम होंगे अपनी ipython हिस्ट्री पुनः प्राप्त करना
हिस्ट्री के भाग देखने
हिस्ट्री के भाग को फाइल में सेव करें
ipython के भीतर से स्क्रिप्ट चलाएं
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu linux 1404 ऑपरेटिंग सिस्टम
python 343
इस ट्यूटोरियल का अभ्यास करने के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि इंटरैक्टिव रूप से प्लॉट्स का उपयोग कैसे करें और प्लॉट कैसे संजाएं
यदि नहीं वेबसाइट पर पूर्वापेक्षा पाइथन ट्यूटोरियल्स देखें
अब ctrl+alt+t कीज एक साथ दबाकर टर्मिनल खोलें
अब टाइप करें ipython3 और एंटर दबाएं
pylab पैकेज आरंभ करें टाइप करें percentage pylab एंटर दबाएं
प्लॉट करने के लिए टाइप करें x is equal to linspace ब्रैकेट्स में minus 2pi comma 2pi comma 100 और एंटर दबाएं
आगे टाइप करें plot ब्रैकेट्स में x comma xsinx और एंटर दबाएं
हमें एक एरर मिलती है xsin is not defined
यहाँ मल्टिफिकेशन चिन्ह मौजूद नहीं है अतः अब टाइप करें
आगे दोनों x और y axes के लिए title औऱ labels जोड़ते हैं
टाइप करें xlabel ब्रैकेट्स में इंवर्टेड कॉमास में डॉलर चिन्ह में x और एंटर दबाएं
ylabel ब्रैकेट्स में इंवर्टेड कॉमास में डॉलर चिन्ह में fx
title ब्रैकेट्स में इंवर्टेड कॉमास में डॉलर चिन्ह में x और xsinx
अब हम लेबल्ड प्लॉट देख सकते हैं
टाइप की गई कमांड की हिस्ट्री percentage history कमांड द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है
टाइप करें percentage history और एंटर दबाएं
percentage history स्वतः एक कमांड है और सबसे नई कमांड के रूप में प्रदर्शित होती है
हम टर्मिनल में जो भी निष्पादित करते हैं हिस्ट्री के रूप में संचित होता है
यदि आप देखना चाहते हैं कि पांचवीं कमांड क्या है तो percentage history कमांड में एक आर्ग्युमेंट के रूप में 5 पास करें
टाइप करें percentage history space 5 और एंटर दबाएं
अब यहाँ विडियो रोकें और निम्न अध्याय को हल करने का प्रयास करें और पुनः विडियो चलाएं
ज्ञात करें कि 5 और 10 के मध्य नई कमांड्स को सूचीबद्ध कैसे करें
टर्मिनल पर वापस जाएं
हल देखते हैं
टाइप करें clf और एंटर दबाएं
percentage history कमांड की जानकारी अच्छे से पढ़ें
हम देख सकते हैं percentage history hyphen n 4 hyphen 6 4 से 6 तक कमांड्स प्रदर्शित करता है
यहाँ hyphen n एक ऑपश्नल आर्ग्युमेंट है जो लाइन संख्या प्रिंट करता है प्रलेखीकरण को बंद करने के लिए q टाइप करें
अब टाइप करें percentage history space 5 hyphen 10 और एंटर दबाएं
हिस्ट्री को सेव करने के लिए हम percentage save कमांड का उपयोग करते हैं
ऐसा करने से पहले पहले हिस्ट्री में देखते हैं और पहचानें जिस कोड की हमें आवश्यकता है
टाइप करें percentage history और एंटर दबाएं
दूसरी कमांड linspace है लेकिन तीसरी कमांड वह कमांड है जो हमें एरर देती है
इसलिए हमें इसकी आवश्यकता नहीं है
चौथी से सातवीं कमांड्स आवश्यक हैं
अतः हमें अपने प्रोग्राम के लिए दूसरी और फिर चौथी से सातवीं कमांड की आवश्यकता है
इसे वर्तमान कार्यरत डाइरेक्टरी में सेव करें इसलिए सिन्टैक्स होगा percentage save space plot underscore scriptpy space 2 space 4 hyphen 7 और एंटर दबाएं
percentage save कमांड में पहला आर्ग्युमेंट फाइल का नाम है जिसमें कमांड्स सेव हैं
दूसरा आर्ग्युमेंट कमांड्स की संख्या देता है जिन्हें स्पेसेस द्वारा पृथक सेव किया जा रहा है
अब plot underscore scriptpy फाइल खोलें और कंटेंट देखें
अब सीखते हैं कि python script के रूप में फाइल को कैसे चलाएं
टाइप करें percentage run space hyphen i space plot underscore scriptpy और एंटर दबाएं
यहाँ hyphen i पैरामीटर टेक्स्ट एडिटर में लिखे कोड को चलाता है
यह ipython सेशन में इंटरैक्टिव रूप से परिभाषित variables का उपयोग करता है
स्क्रिप्ट चलती है लेकिन हम प्लॉट नहीं देखते हैं
ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम स्क्रिप्ट चला रहे हैं हम इंटरैक्टिव मोड में नहीं हैं
प्लॉट देखने के लिए टर्मिनल पर टाइप करें show और एंटर दबाएं
यहाँ विडियो रोकें और निम्न अध्याय को हल करने का प्रयास करें और पुनः विडियो चलाएं
प्लॉट बनाने के लिए स्क्रिप्ट चलाएं और उसे प्रदर्शित करें
हम देखते हैं
टाइप करें percentage history space hyphen n और एंटर दबाएं
प्लॉट विंडो साफ करते हैं
अब कमांड percentage save का उपयोग करके स्क्रिप्ट सेव करें
हमें लाइन 2 फिर 4 से7 और 16 की आवश्यकता है
टाइप करें percentage save space show underscore includedpy space 2 space 4 hyphen 7 space 16 और एंटर दबाएं
स्क्रिप्ट चलाने के लिए टाइप करें
हमें इच्छित प्लॉट मिलता है
पिछली कमांड पर जाएं
हम देखते हैं कि यह nameerror उत्पन्न करता है जो दर्शाती है नाम linspace परिभाषित नहीं है
इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए है हमने सीखा –
percentage history कमांड में आर्ग्युमेंट पास करके हिस्ट्री के भाग को केवल देखना
percentage save कमांड का उपयोग करके आवश्यक क्रम में कोड की आवश्यक लाइन्स को सेव करना
use सेव की हुई स्क्रिप्ट को चलाने के लिए percentage run space hyphen i का उपयोग करना
यहाँ कुछ स्वतः निर्धारण वाले प्रश्न हैं
आप कमांड लाइन्स 2 3 4 5 7 9 10 और 11 को कैसे सेव करेंगे
percentage save filename 25 7 9 hyphen 11
percentage save filename 2 hyphen 11
percentage save filename
स्क्रिप्ट को चलाने के लिए कौन सी कमांड है
percentage run hyphen i script name
percentage execute hyphen i script name
उत्तर हैं
स्क्रिप्ट को चलाने के लिए हम percentage run space hyphen i space scriptname का उपयोग करते हैं
कृपया अपनी समयबद्ध queries इस forum में post करें
कृपया पाइथन पर अपनी सामान्य क्वेरी इस फोरम में पोस्ट करें
fossee टीम tbc प्रोजेक्ट का संयोजन करती है
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है अधिक जानकारी के लिए कृपया इस साइट पर जाएं
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं जया आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद